सेंकुलट लिखा हुआ है और मैन पेंटस और भी कुछ लिखा हुआ है और इसके पीछे कुछ पीली बोरी डली हुई हैं और सामने एक कांच--

पीले कलर की ये खिड़की लगी हैं कांच की जो काले--